यहां पर एक कंप्यूटर सिस्टम दिख रहा है।

नीचे एक स्टूल भी रखा हुआ है सामने टी_वी भी लगा है।

ये एक बगीचा है जहां पर माली पौधों को पानी दे रहा है बगल में एक कुर्सी भी बनी हुई है।

और बगल में सात पांच कुर्कीस कुर्सियां रखी हुई हैं।

जैसे लग रहा है कि ये किसी जगह की पार्किंग है।

बगल में एक कुर्सी रखी हुई है और ये सिल्वर कलर का शटर दिख रहा है।

यहां पर एक दीवाल बनी हुई है जिसमें एक शटर लगा हुआ है।

बगल में गुब्बारे से सजावट करी गई है ऐसा लग रहा है जैसे यह नई दुकान खुली हो--

किनारे बहोत बड़े बड़े पेड़ हैं और हरे भरे पेड़ हैं।

और यहां पर एक बूढ़ा झुका हुआ है और ऊपर किशन फर्नीचर्स लिखा हुआ है।

ये एक मार्केट का व्यू है जहां ओवरब्रिज के नीचे काफी सारे ऑटो लगे हुए है और यहां एक नीला बेग रखा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट है जहां पर फूड ऑनली लव लिखा हु--

और पीछे अलमारी पर नमक की थैली भी रखीं हुई हैं।

ओ बाकी फैन भी मिलता है यहां पर ये लड़का खड़ा हुआ है।